यह एक काफी बड़ी सोसायटी है सोसायटी के सभी फ्लोर एक जैसे ही हैं।

ये एक ब्रिज है दो व्यक्ति अपने हाथो में कुछ उठा कर ले जा रहे है एक व्यक्ति ने मछली पकड़ रखी है काफी सारा पानी पानी है।

और ये एक बीच है सामने समुद्र है जिसमे व्यक्ति इन्जॉय कर रहे है खुर्सियाँ रखी हुई है।

होटले खुली हुई है रेती ही रेती है चारों तरफ पत्थर एकदम नीले नीले हो रहे है।

या नारियल के पेड़ लगे हुए है काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है।